स्कूटी दिखाई दे रही है।

बाइक दिखाई दे रहा है।

इंसान दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

और पार्क दिखाई दे रहा है।

बादल दिख रहे हैं एक बिल्डिंग दिख रहा है।

सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहा है।

जंगल दिखाई दे रहा है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पौधे दिख रहे हैं।

और दिख रहा है जहां पे लिखा है काजीर रोंघनंगपी मेमोरियल पार्क ।

चप्पल दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

और आसमान दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मिट्टी दिखाई दे रही हैं।

सीढ़ी दिखाई दे रही हैं।

बेंच दिखाई दे रहे हैं।

आगे स्क्रीन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में तीन लोग दिखाई दे रहे हैं।

अ जो लाल वाला कपड़ा पहना हुआ है उसके--

प्रोविंस कॉलेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

घास दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहा है।

ऊपर मान्यवर लिखा हुआ है।

और कुछ पेड भी दिख रहे हैं।

हरे अंगूर दिखाई दे रहे हैं।

अनार दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में घास दिखाई दे रहा है एक इंसान चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

आईना दिखाई दे रहा है।

इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक बारबैल दिखाई दे रहा है।

स्कूटी दिखाई दे रही है।

और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग दिख रहे हैं।

और जमीन दिख रहा है।

एक इंसान दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

बादल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में काउंटर दिख रहा है।

टी_वी स्क्रीन दिख रही है।

रेड कलर की रिबन दिख रही है।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

आसमान दिखाई दे रहा है।

खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

एक साइकिल दिखाई दे रहा है।

सफेद फ्लोर दिख रहा है।

जंगल दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और बादल दिखाई दे रहा हैं।

गेट दिखाई दे रहा है।

एक आसमान दिखाई दे रहा है।

खिड़की दिखाई दे रही है।